जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूं तो एक विद्यालय दिखाई दे रहा है। विद्यालय में कुछ छात्रों लाइन में खड़े है। उन्होंने टेबल पर अपने-अपने बनाए हुए कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हुए --

लाइट्स लगाए गए है ऊपर एक फैन है बगल में वहाँ पर बॉटल्स रखी हुई दिखाई दे रही है टेबल पे अलग-अलग तरीके की फाइल्स बुक्स भी रखे हुए हैं।

बहुत ही बड़े और सुंदर एल.सी.डी. यहां पर लगे हुए दिख रहे हैं।

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो यहाँ एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है। बस में बहोत सारे लोग चढ़ रहे हैं। कुछ लोग नीचे खड़े हुए --

जैसेकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो एक सड़क दिखाई दे रही है। गाड़ियाँ वहाँ पे आते-जाते दिखाई दे रही है। सामने एक कार खड़ी है।

बहुत सारे लोग यहां पे जमा हुए हैं ठंड की वजह से सबने स्वेटर टोपी पहनी हुई दिखाई दे रही है।

बाजू में फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है।

जैसे की मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो एक खेती का काम चलते हुए दिखाई दे रहा है। खेत में एक इनसान काम कर रहा है।

जैसे की मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो एक जिम दिखाई दे रही है जिम में बहोत सारे लोग --

यहाँ पे बहोत बड़ी-बड़ी मशीनस और लाइटस भी लगे हुए हैं।

जैसे की मैं देख पा रही हूँ तो एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में --

कुछ लोग वहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड बहोत ही बड़ा --

जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो यहाँ पे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। रास्ते के अगल-बगल में छोटी --